यहाँ पर बहोत सारे बच्चे भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर पर काफी सारे लोग दिख रहे हैं।

तथा केंडिल जले हुए दिख रहे हैं।

तथा पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर पे मुझे एक दुकान दिख रही है और इस दुकान के बोर्ड में लिखा हुआ है ऐन श्यान एकेडमी इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंप्यूटर एजुकेशन --

पीछे दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई है। जिसमें लिखा गया है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस ।

इस पिक्चर में मुझे दीवार में ग्रीन कलर का पेंट दिख रहा है।

यह तस्वीर मुझे किसी पार्क की लग रही है।

यहां पर काफी सारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग आए हुए हैं।

और एक खुला आसमान भी दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी रेलवे स्टेशन की लग रही है।

बड़े बड़े इमारतें भी दिख रही हैं।

बारिश होते हुए ये भी दिख रही हैं।

उसके आगे एक बोर्ड लगाया गया है जीस पर लिखा है धम्मा अरुणा अरुणाचल विपाषना मेडिटेशनल सेंटर ।

इस तस्वीर पे दुकानें देखने को मिल रही है।

रेयी मार्बल टाइल्स एंड सेनेटरी ।